फूल लगा है पेड़ पे साइड की तरफ में पेड़ है।

मैजिक दिखाई दे रही है एंबुलेंस जाती हुई दिख रही है लाइट के कुछ वायर जा रहे हैं कुछ दूरी पे दुकानें नज़र आ रही हैं।

और ब्लू शर्ट पहनी हुई है सामने की तरफ में लाल चेयर रखी है नीचे की तरफ --

एकऔरत खड़ी है वहां पे खिड़की नजर आ रही है।

सामने की तरफ एक ग्रीन दीवार दिख रही है अंदर की तरफ कुछ सारा सामान रखा है।

दीवार पे कुछ लाल रंग का पुता हुआ है।

ये एक स्नूकर की तस्वीर है जिसमें एक लड़का रेड शर्ट में--

साइड में पेट्रोल पंप की मशीन हेगी कुछ गाड़ियां खड़ी हैं।

बाइक पे दो लोग बैठे हैं जिससे एक आदमी हेलमेट पहना है पीछे की तरफ में कार हैगी आसमान नजर आ रहा है वायर दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग चेयर में बैठे हुए हैं फादर बैठे हुए उनके पीछे बच्चे खड़े हुए हैं।

इस तस्वीर में मुझे रोड दिखाई दे रही है जिस पे एक आदमी है।

जिसमें टेबल पे बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं।

शैंपूज वगैरह क्रीम टंगी हुई है सामने की तरफ में एक आदमी बैठा हुआ है।

सामने की तरफ में घास लगी है हरी रेलिंग लगी हुई है।

लाइट दिखाई दे रही है रेलिंग दिखाई दे रही है क्यारी की तरह बहुत सारी--

सामने की तरफ में कांच है।

इस तस्वीर में मुझे पार्क नजर आ रहा है।

तस्वीर में बहुत सारे कपड़े नजर आ रहे हैं अलग-अलग रंग के जैसे पिंक --

कुछ दूरी पे पेड़ नजर आ रहे हैं एक रोड दिखाई दे रही हैं एक आदमी खड़ा है नीली शर्ट --